देख सकते हैं यहां पर कुछ काम करने का प्रोसेस चल रहा--

यहां पर काले रंग का पेहना एक लड़--